यहाँ एक मकान दिखाई दे रहा है जिसमे ऐ बहुत सारी गाड़ी लगी रखी हुई दिखाई दे रही है उस मकान के अंदर लोग जाते और आते हुए दिखाई दे रहे है और पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे है।

यह एक यह एक बहुत बड़ा मकान दिखाई दे रहा है जहाँ पर लोग जिम करते है जिम का सामान दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक और से दिखाई दे रहा है जिसपे अनेक प्रकार के पर्दे लगे हुए दिखाई दे रहे है अलग अलग कलरों में पर्दे है और यहाँ पर लाइट भी नजर आ रही है।

यह एक स्टेशन दिखाई दे रहा है जिसमें लोग सीढियों पे सीढियाँ दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर बा यहाँ पर तगाड़ियों में मछली लगी हुई है यहाँ पर रूम मकान भी दिखाई दे --

एक नर्बदा जी दिखाई दे रही है जिसमें दो भैंसे नहाई नहा रही है नहा रही है वे एक दूसरे के मुँह लगा रही है।